पर विनर कोई एक ही होगा।

बेकरी में मुझे हर आइटम में बहुत अच्छा लगता है बेकरी की चीज़ा हा मुझको तो बहुत पसंद है।